इसमें एक मंदिर नजर आ रहा है एक कोई मूर्ति बनी हुई है सामने ऊपर की साइड एक झंडा लगा हुआ है राइट साइड में एक छोटा-सा पेड़ भी नज़र आ रहा है और दो गेट नजर आ रहे हैं सामने की साइड ।

ये कोई बुद्ध भगवान की मूर्ति है एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है ऊपर के साइड में एक लाइट भी जल रही है।

ये कोई किसी का बोर्ड हे जो नजर आ रहा है नीचे की साइड एक खिड़कि नुमा नजर आ रही है।